ये हर रायगढ़ के स्थित मारुति सुज़ूकी के शोरूम हावे जहां चार चक्का--

यह एक प्राइवेट गेराज है जहाँ चार चक्का वाहन मन ला रिपेरींग करतथे सर्विसिंग करथे और टूटे फूटे रथे तौला बनाथे--